खेत भी है और एक पत्थर भी रखा हुआ है।

और वाइट कलर का कुर्ता और रेड कलर का दुपट्टा--

और झाड़ू भी रखी हुईं हैं लटकी हुईं हैं।

हमारे सामने एक बैंक है उस बैंक का नाम नीले कलर की बोर्ड पर लिखा है बैंक का नाम है केनरा बैंक ।

हमारे सामने प्लेट पर खाना रखा हुआ है।

उसपर चावल सलाद कटोरी पर सब्जी दाल चम्मच और टेबल के ऊपर रखा हुआ है।

कुछ बैनर टंगे हुए है बैनर्स नाम लिखा है डाक्टर विकास गुप्ता--

हमारे सामने एक आदमी खड़ा हुआ है जो लोहे की छड़ पर टिका हुआ है।

हमारे सामने एक बड़ा मैदान और बहुत बड़ी बिल्डिंगस दिख रही है आजू बाजू की बिल्डिंग है नीला आसमान है।

और उस बिल्डिंग के पास एंट्री गेट है जहां पर लोहे की गेट लगी है उसे गेट के ऊपर बैनर टंगा है।

कुरकुरे वगैरा आदि सारी सामग्री टंगी हुई है।

जहां पर पीले कलर से पुता हुआ है।

और रेड कलर का थोड़ा पि_ओ_पी किया गया है और ब्राउन कलर का किया गया है भूरे रंग का--

हमारे सामने एक होटल रूम दिख रहा है छोटा सा--

और शर्ट टी- शर्ट और कबर्ड्स बने हुए हैं कबर्ड्स के अंदर कपड़े रखे हुए हैं।

एक बटन लगी हुई है काफी सारी ब्लैक में व्हाईट में रेड कलर का है हारमोनियम --

आदि शैंपू क्रीम बहोत सी चीजें हैं।